जोक इसकी सुंदरता में चार चाँद लगा र --

हे बाल विकास विद्यालय जमू है जो अ ये बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आगे सड़क है बगल में एक अ गाडी खडी है अगल-बगल कुछ लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ बिजली के खम्भे हैं बगल में एक पेड़ है ये --

ये एक मछली विक्रेता है। जो मछलिया बेच रहा है। ये मछली ताज़ी लग रही है। मछली कुछ छोटी मछली है। कुछ बड़ी मछली है।

धुर-धुर के ये एक सिनेमा हॉल है। अ जो काफी सुंदर है। इसमें कुछ सिनेमा अ जो ओपन डिश है। उसका अ ऊपर से डिश दिखाई दे रहा है। आगे कुछ कुर्सियां है।

ये फ्रूट्स का दुकान है। काफी फ्रूट्स यहाँ रखे हुए है। कतार बद्ध तरीके से सजाया हुआ है। ये फ्रूट्स बोहोत सुंदर अ दिख रहा है। उसमे कुछ लाइट्स भी लगे हुए है। लाइट भी बोहोत मन मोहक है।

बोहोत सारे टॉफी के डब्बे --